यहां शीशे के अंदर कई सारी ज्वेलरी र रखी हुई है।

नीचे एक वाटर कूलर रखा है जिसके अंदर ये पानी जा रहा है और पेड़ के बगल में एक पन्नी रखी गई हुई --

यहां पर ये आदमी खड़ा है।

यहां पर एक तालाब दिख रहा है जहां जिसके पास कई सारी औरतें बैठी हुई।

यहां पर लिखा है कैफे मूड अनप्लग ।

अलग अलग कलर में अलग अलग डिजाइनों में बहोत सारी साड़ियां है।

यहां पर मेल डमी भी है जो सूट पहने--

यहां पर फाइल्स भी रखी हुई--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

यहाँ पर डॉलफिन का स्टेचू बना है और बाहर ही कई सारे गमले रखे हुए हैं।

जूते उते सब रखे हैं बेचने के लिए।

यहां पर एक रोड बनी हुई है।

और ये जो बिल्डिंग बनी है यहाँ पे गिलास लगे हुए शीशे के।

कार्य कर रहे हैं यहां बच्चे लाइन से बैठे हुए और कई सारी टेबलें रखी हुई हैं।

बहोत सारे लोग अपना अपना सामान लेकर बस के इंतजार कर रहे है।

यहाँ पर एक लाल और पीले कलर में बस खड़ी है।

पास पेड़ भी बने हुए हैं।

यहां पे कई सारी बाईके रखी हुई हैं।

पर यहां पर पत्तियां भी पड़ी हुई है।

यहां घास है और यहां पौधे निकले हुए हैं।

यहां बाहर गेट भी लगे हुए--

इसके ऊपर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ के ऊपर कलर हुआ है।

यहीं पे वाइट टेंट भी लगा हुआ है।

यह डिस्प्ले में कई सारे केक और रखे हुए हैं।

यह य ये ड्राइक्लीनिंग कि शॉप है।